जैसा की हम इस पे देखते है कि अनेक प्रकार की मुर्तिया बनाई गए हैं।

और एक ही ग्रीन में है जो कि शताब्दी एक्सप्रेस शताब्दी ट्रैवलर्स है।

अंदर के तरफ देखे तो अलमारी भी दिखाई दे रही हैं जोकि बोहोत बड़ी शॉप --

जिसमें तीन चार व्यक्ति खड़े हुए हैं जो कि मछली खरीदने के लिए देख रहे हैं। ये किसी रोड के किनारे का सीन है।

सामने बोहोत ही बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं जोकि बोहोत ही प्यारे लग रहे है।

जो कि बोर्ड लग हुआ है। डेली नीड्स स्टोर --